यह एक कमरे का दृश्य है जिसमें एक सोफा लगा हुआ है।

ऐरो की दिशा में सामने कि ओर एक बड़ा सा घना पेड़ है।

मुख्य द्वार के पास एक टेबल रखा है बगल की चेयर में एक आदमी बैठा है। दो व्यक्ति उसके पास खड़े हैं सफेद धोती कुर्ते में।

ये एक गार्डेन का दृश्य है जिसमें जमीन पर दो व्यक्तियों की परछाई दिखाई दे रही है।

सफेद कार जा रही है और एक ऑटो लाल कलर का सवारी लेकर जा रहा है।

अलग अलग केबिन बने हुए हैं जो की ग्लास लगे हुए हैं।

यह एक मैदान के सूर्यास्त के समय का दृश्य है।

एक हांडी काली है और एक कॉपर कलर की है जो एक कॉपर की भट्टी के ऊपर रखी हुई है।

ढाबे के बाहर कुछ कार और बाइक्स पार्क की हुई है।

कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ पेड़ पौधे बहुत छोटे हैं कुछ पेड़ बहुत बड़े और मोटे हैं जिनकी कुछ सूखी हुई डालियां जमीन पर गिरी हुई है और उन पर पानी गिर रहा है।

बाएं से तीसरे कठपुतली का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा--